नदी के खाते-काते हरे पेड़ पौधे हैं जो देखने में अमेजिंग लग रहा है यहां पे सड़क बनाया गया है जो कि लोग टहल सकते हैं।

यह एक पार्क का फोटो लग रहा है गाछी पर बॉल लगाया गया है यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे बॉल सजाया गया है एक बहुत बड़ा बॉल लगाया गया है जिसके कारण यहां पे बहुत ज्यादा उजेला है यहां पे चमकीला बॉल लगाया गया है।

यहाँ पे बगल में यहां नदी भी दिख रहा है जो बहुत ही सुंदर लग रही है।

जो कि कुछ कट कर रहे हैं कुछ बैठे हुए कुछ खड़े है इसका ड्रेस रेड कलर का है जो कि टाइल्स लगाए हुए है ब्लैक कलर का जूता पहने हुआ है येलो कलर का जूता पहने हुआ है।

बहुत सारे बच्चे हैं जो कि वाइट कलर का कागज येलो कलर का कागज बहुत सारे कागज रखे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं।

यहां पे एक चेयर लगाया गया है जो कि अच्छा चेयर है यहां पे दो इंसान बैठे हुए हैं एक इंसान चूप है एक इंसान घड़ी पहना हुआ है।

यह इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है जो कि बहुत ही सुंदर से सजाया गया है बाहर में येलो का रेड कलर ब्लैक कलर का डीजे रखा गया --

यहां पे तार रखा गया है यहां पे इसके सामने एक सेवा केंद्र है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है उसका पोस्टर ग्रीन कलर का है।

जो देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि झरना द्वारा पानी गिर रहा है वाइट कलर का पानी है जो देखने में सुंदर लग रहा है या बहुत ही अच्छा लग रहा--